अ मस्जिद जैसे और नीचे एक क किसी की मस्जिद टाइप की बनी हुई है और आसपास एक गार्डनिंग सी है ग्रीन कलर की और आसपास कुछ वृक्ष हैं।

पिक्चर मे एक मंदिर बना हुआ है जो ऊपर की पिंडी है वो लाइट पिंक कलर की है ऊपर ओम बना हुआ है गोल्डन कलर से और नीचे ग्रीन कलर की तीन पत्तियां लगाई गई है।